यहां बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है लाल कलर का नीचे बिछा हुआ है।

एक बाइक खड़ी हुई है।

एक साइड लेडी से कैंडलें जला रही है।

कुछ लोग चर्च के अंदर भी--

रात का टाइम हो रहा है।

एक हरे कलर का मेन गेट भी साइड में है बड़ा सा एक पेड़ भी है।

यहां पर एक मुर्गा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

यहां बहुत सारे तरह-तरह के--

उसके हाथों में जूते है।

कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

चौटाइयां बिजी हुई है यह एक बड़ा सा हॉल है।

यहां पर मेन गेट पे फूलों और पर्दों से डेकोरेट है।

एक बिजली का टावर भी बना हुआ है।

कुछ बाइकें भी खड़ी है।

तरह का सामान रखा हुआ है।